तो स्टेज है जो ब्लू कलर का है ऊपर पंखे लगे हुए है दीवाल का कलर सफ़ेद है पीछे बर्तन रखे हुए है पंखा है कलर का पंखा रखा हुआ है नीचॆ--

नीचे हर नीचे हर सा हैं ऊपर साइड लाइटे लगे हुए पंखे लगे हुए हैं।

चित्र में हमें एक स्टेज दिख रहा है जहाँ पे बच्चे को सम्मानित नित किया जा रहा है पुरुस्कार दे कर बच्चों मे अ नृत्य की ड्रेस पहन के रखी हुई हैं।

चित्र में हमें एक ऐरोप्लान दिखाई दे रहा है जोकि व्हाइट कलर का ऐरोप्लान है उसमें ब्लू कलर से नीचे साइड बना हुआ है और यह लोग- वोग़ सीढ़ियों से चढ़ रहे है बॉडी गार्ड्स हैं।

इस चित्र मे हमे एक खंडर दिखाई दे रही हैं जो की बहुत बड़ा खंडर हैं खंडर का अजीब खँड़रों से बना पत्थर हैं बीच-बीच मे भी--

-- हमें किराने की दुकान दिखाई दे रही है अंदर बहुत सारे सामान रखे हुए कुर्सी रखी --